रख रखाव बढ़िया नही है। दो आदमी दिख रहा है इसमें जो लाल रंग का कपड़ा पहने हुए है।

यह गणेश जी की तस्वीर है जिस में दो मैकेनिक गाड़ी को हाइड्रोलिक की मदद से ऊपर उठा दिए है और इस का टायर खोल के चक्का के पास कुछ काम कर रहे है ।

यह एक मस्जिद का तस्वीर है। यह बहुत पुराना मस्जिद लग रहा है। इसमें दरवाजा हरा रंग का है। दरवाजा के दुनू तरफ उर्दू में कुछ लिखा है।

ये औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र का पर्यटन राजधानी है। इस मेला में बहुत भीड़ है और सजावट वगैरा बहुत खूबसूरत किया हुआ है।